छोटे छोटे घर बने हुए--

ओपनिंग हुई है और--

एक बहोत बड़ा जिम --

पेड़ है स्विमिंग पूल में नहा--

सुंदर मोर बैठा है।

की बहोत सारे काम चल रहे हैं। दो--

ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ--

बड़ा फंक्शन है यहां पर--

अंदर दो लोग हैं और उस में--